निचे कुछ पेड़ दिखाई दे रहै है और रोड के इस तरफ कुछ स्कूटिस --

मल्टीस की कुछ खिड़किया दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति मल्टीस के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इट पड़ा है और एक कुत्ता भी सोया हुआ है यहाँ पर दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहै है और कुछ और बालटीस भी --

बहुत सारी मिट्टिया और कुछ पेपर्स पड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ लोग हमें चलते हुए दिखाई और कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें ठेले पर फल-फ्रूट्स और केरट्स ।

यहाँ पर हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के मर्म अंदर हमें एक भगवान की मूर्ती दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक रोड दिखाई दे रही है रोड पर हमें काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहें हें जिन्होंने कुछ सेम_कलर के कपड़े पहेन रखे हैं इन --

यहाँ पर हमें एक पेट्रोल_पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल_पंप पर हमें कोई ओर पेट्रोल_पंप पर हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें कुछ गमला रखा हुआ दिखाई दे रहें हैं।

और कुछ लाइटस के खंभे दिखाई दे रहें हैं ओर यहाँ पर काफी पेड़ -पोधें दिखाई दे रहें हैं।

सेंटाक्लॉस वाली टोपी पहन रखी है और यहाँ पर एक सेंटाक्लॉस भी दिखे दे रहा है यहाँ पर काफी सारे बलून्स दिखाई दे रहे है और एक--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

यहाँ पर हमें एक बड़ी सी मल्टी दिखाई दे रही है जो फिटनेश लाइन के मल्टी लग रही है यहाँ पर हमें कही सारे लाइट्स --

मीटर रीडिंग दिखाई दे रहा है।

मंदिर जैसा महल जैसा दिखाय दे रहा है और एक बड़ा सा क्रेन दिखाई रहा--